शायद महाराष्ट की कोई फंक्शन हो रही है जहा पे सारे लोग ढोल बजा कर अपनी जशन मना रहे है और यहा सब बहुत खुश नजर आ रहे है।

इन्होंने अ-अ-ह इन्होंने इस काय कलर का कपड़ा पहना हुआ हैं और इनके पास बड़े-बड़े ढोल हैं और ये सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं।

और यहाँ पर बोहोत ही प्यारा-प्यारा सा गाच लगा हुआ है बीच मे वाटर के कुछ फबबरे लगे हुए है एण्ड इनके रोड इनके रोड बने हुए है यहाँ पर गोल टाइप के अ--

एक सिटी है जहाँ पर बोहोत सारे गड़िया चल रही है ओर एक इंशान भी है।

जिनके हाथ मे चुडिया है ओर एक ने पिंक कलर का पेहेना है।

ये एक घर है जिनके ग्रील मे सिल्वर कलर का पैंट है और बगल मे शायद एक मंदिर है और इनके घर का पैंट ग्रीन है और इनके गेट का कलर ब्लाक है।

और इनकी खिरकी मे ब्राउन कलर क अ ब्राउन कलर के कुछ बने हुए है एण्ड यहाँ पे बोहोत सारे बल्ब लगे हुए ओर यहाँ पर टेबल पर कुछ रखा हुआ है।

और इ बोट का कलर वाइट है इनके गेट रेड कलर के है और इनमें अ बोहोत सारी अ तर बनी हुए है।

एक गार्डन है जिनकी बगल मे एक घर है उनका कलर वाइट है एण्ड यहा पे बोहोत सारे फ्लावर्स है यहाँ पर एक अ फऊअरे रखी हुई है जहाँ पानी पड़ रही है।